और यहां पर सारा सामान मिलता है भाई चावल दाल सब कुछ --

और फिर भईया भाई बाल काटते है बहुत ही अच्छे बाल काटते हैं।

और यहां पर जो ये पेड़ लगा रखे हैं ये इसकी सुंदरता को चार चांद लगा रहे हैं।

यार मैंने अभी-अभी अपनी नई शॉप खोली है जनरल स्टोर की।

वो सामने यार वो देखो दुर्गा माँ देवी मंदिर उसके मंदिर को देखो कितनी अच्छी पेंटिंग बना रखी है माँ शेरा वाली।

ये चीज तो शादी में चाल चांद लगाती है भाई।

यहां पर तो स्कूल के गार्डन में यहां पर सभी बच्चे योगा सीख रहे हैं और योगा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है।